ऊपर में पुल बना हुआ नजर आ रहा है।

और सामने पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है जो कर--